बच्चों के हाथ में सामान भी दिखाई दे रहा है।

नीचे कई सारे लोग भी यहां दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर बहोत सारे पुरुष व महिलाएं दिखाई दे रहे हैं।